यह एक किताब की दूकान हैं जहाँ बोहत सारे किताबें रखी हुई हैं वाइट कलर के शोकेस के अंदर भी बोहत सारी किताबें सजी हुई हैं।

दो आदमी खड़ा है। वेन वाला अ सामने खड़ा है। वेन के ऊपर एक काला रंग का टप रखा हुआ है। जो बरफ से भरा है।

चर्च के बाहर की तस्वीर है यहाँ चर्च के फादर फताका लहराते हुए दिखाई दे रहे है फादर सफेद रंग का वस्त्र पहने है फादर के बगल में एक लड़का चुपचाप से स्ट्रेट खड़ा हैं।

ये एक चर्च के अंदर की तस्वीरें हैजहाँ एक लड़की सफेद साड़ी पहनी है और एक लड़की सफेद लेहंगा पह--

उसका एक हाथ पीछे की तरफ है हाथ मे एक कागज है आसपास घर है ईंट नीचे गिरी हुई है।

सभी ने सफेद सफेद सफेद वस्र पहने है सब के कमर में पीले रंग की बेल्ट लगी हुई है।

यह एक चर्च के अंदर की तस्वीर हैं एक व्यक्ति सामने माइक में खड़ा हो के कुछ बोल राहा हैं उसके हाथ में एक सफेद रंग की काग़ज हैं।